और लाइट भी जल रही है मरकरि या है।

बेसक ये छट के आसपास का फोटो हो सकता है।

हालांकि पार्क में कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन पार्क में कुछ जले जैसा राख है कुछ जलाया गया होगा।

और ऐंड अंदर जो बिल्डिंग्स बन रही है उसको ग्रीन कलर के कपड़े से ढका हुआ है।

और एक महिला सफेद साड़ी पाहन कर बीच में बैठी हुई गीत गा रही है।

यह तस्वीर किसी डांस क्लास का है।

के लिए स्ट्रेचिंग कर रहा है या फिर डांस का कोई स्टेप कर रहा है।

किसी इस ऐतिहासिक स्मारक भी हो सकता है।

अंदर किसी स्मआउ प्रतिमा लगी हुई है और उस पे जाने का रास्ता जो है वेल फर्नींड है।

यह तस्वीर अअ किसी आश्रम का है।

और पार का मेन गेट तो बंद है लेकिन साइड से एंट्री गेट खुला हुआ है।

और बस में एक व्यक्ति चहर रहा है और दो व्यक्ति बस के पास से क्रॉस कर रहा है।

यह व्यक्ति संभवत ठंडे के दिन का है क्योंकि जो व्यक्ति गुजर रहा है वो ब्लैक कलर का जैकेट पहने हुए हैं।

और इसमें मेहदी का फंक्शन हो सकता है या फिर हल्दी का क्योंकि सारे जो सब इसमें सदस्य दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर जो दिखाई दे रहा है एक अपार्टमेंट या कॉम्प्लेक्स का है।

क्योंकि गंगा किनारे का है सीढी बना हुआ है।

दो तीन स्ट्रीट लाइट्स भी दिख रही हैं जिसकी लाइट ऑन है यानी कि यह फोटो जो है।

और साइड मेंगेंदा के फूल से कुछ गदा जैसा बनाकर डेकोरेशन किया गया है।

यह तस्वीर जो दिखाई पड़ रहा है रोड के किनारे का है।

और नीचे में एक लड़की बैठी हुई है ग्रीन कलर का टी-शर्ट पहन के--

और इसका एड्रेस कुछ खास पता नहीं चल रहा है।

अम् लाल कलर का बिल्डिंग है बिल्डिंग का काम नाम कुछ परिवहन विभाग जैसा कुछ लिखा हुआ है।

फेडरल बैंक का ए_टी_एम है जिसका फोटो बाहर से एक लड़का क्लिक कर रहा है।

अ लड़का अपना फोन मेंअ ए_टी_एम के फोटो को क्लिक करने का प्रयास कर रहा है।

अरए_टी_एम के बाहर गमला में पेड़ पौधा लगा हुआ है।